बैठा हुआ है एक व्यक्ति उसके बाल काट रहा है इसमें एक एल_इ_डी लगी हुई है।

इसमें और भी सामान दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

दो पोट में फ्लावर दिखाई दे रहे हैं झंडे भी नजर आ रहे हैं दीवार पर फोटोस टकी है।

इस इमेज़ में एक कैफे दिखाई दे रहा है इसमें लाइट जली हुई है कुछ लोग बैठे हुए है।

एक इमेज में एक गाय दिखाई दे रही है इसके पीछे एक लड़का और एक --

लड़की दिखाई दे रही है इनके पास कपड़े टंगे हुए है पीछे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जो खुला हुआ है।

एक व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ है इसके पास ही काउंटर में बहोत सारे सामान नज़र आ रहे हैं।

यहां पर एक गेट भी नजर आ रहा है गमलों में पौधे लगे हुए हैं।

गेट पर एक लड़का खड़ा हुआ है पर्दे भी लगे हुए हैं लाइट जल रही है।

ऊपर एक सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई है दीवार पर मैप भी लगा हुआ है।

इसमें स्टिल के गिलास का बर्तन भी दिखाई दे रहे है कुछ और भी अन्य घर के सामान --

आदमी बैग लेकर जा रहा है इसमें बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

पेंटिंग्स दिखाई दे रही है अंदर कमरे में टेबल कुर्सियां दिखाई दे रही है।

तकिए रखे हुए हैं एक टेबल और कुर्सी भी दिखाई दे रही है टेबल पर तकिया रखा हुआ है खिड़कियों पर --